यहां पर रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है।

यहां पे एक बड़ा सा टेबल लगाया हुआ है।

नीचे में बहोत सारा रोड लक रखा हुआ है।

और इस पर कई सारा डिश बनाया हुआ है।

और नीचे स्टेज जैसा बनाया हुआ है।

एक लड़का है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

बगल में कुछ पत्थल ये सब भी है लगाए हुए।

दो आदमी हैं जिसके हाथ में एक बुक है।

बगल में बेंच लगाया हुआ है बड़ा बड़ा।

ऊपर करकट से छाया हुआ है छोटा सा घर।

खेत में बहुत सारे फूल का खेती हुआ है।

यहां पे पेंट किया हुआ है पूरा गोल्डन कलर से बहुत सारे रस्सियां तानी हुई है इधर उधर।

जो सारी महिला लोग पानी के बीच में खड़ी है हाथ जोड़कर।

बहुत सारा सीढ़ी बनाया हुआ है।

कुछ बच्चे ग्रीन कलर का ड्रेस पहने हुए हैं।

रूम में रेख लगाया हुआ है।

टेबल पे कुछ सामान्य रखी हुई है।

जो वाइट कलर की पिंक कलर की और ब्लू कलर की है।

किस कोई बोड़ी ब्लू कलर का है कोई बोड़ी रेड कलर का है।

कुछ धान पक्की हुई है पीली कलर की।

पर भी छोटे छोटे घास यह सब लगाए हुए हैं।

यहां पर मस्जिद का दृश्य दिख रहा है।

चारों तरफ घास ये सब लगाए हुए हैं पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

इस पे बहुत सारा कार्टून डिब्बा रखा हुआ है व्हाइट कलर का ब्लू कलर का।

लेकिन किनारे पे ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है।

शंकर भगवान का है काली माई का मंदिर है।

यहां पर रेस्टोरेंट का दृश्य दिख रहा है।

कुछ डब्बा व्हाइट कलर की है उसका ढक्कन रेड कलर का है।